यह एक तस्वीर वाटर पार्क की लग रही है जहाँ पे बोहोट ही पानी दिख रहा है।

पुल और पेड़ दिखाई दे रहें है।